और ये नज़ारा बहुत सुंदर है शायद इ ये होली के दिन लिया गया फोटो है।

और इनके पीछे इनका दूकान है जहाँ पर समान इधर से उधर बिखरा पड़ा है।

जगह है जहाँ एक दुकान है जो बहुत बुरी हालत में है क्यों की यहाँ पे कुछ समान और किस चीज़ का दुकान है और यहाँ पर एक प्यारा सा मंदिर भी है लगा हुआ है और उसमे एक ब्लू कलर का लाइट भी लगा हुआ है |

यह एक पार्क का फोटो दिखाया जा रहा है जहाँ पे एक बेंच और डस्टबिन हरा कलर का हमें दिखाई दिया जा रहा है और काले कलर की --.

यहाँ पर एक दुकानदार का फोटो देखने को मिल जाता है जहाँ पर ये फोटो खिंचवा रहे हैं और यहाँ पर बहुत सारे स्टेशनरी और चीजें अम बेची जा रही हैं ।